कार दिखाई दे रही है ऑटो दिखाई दे रहा है रंगोली दिखाई दे रही है कुरकुरे दिखाई दे रहे है ग्राउन्ड दिखाई दे रहा है।

होल दिखाई दे रहा है येलो कलर का खंभा दिखाई दे रहा है बोर्ड दिखाई दे रहा है ये कंप्यूटर दिखाई दे रहा है।

हॉल दिखाई दे रहा है येलो कलर के बलून्स दिखाई दे रहे है रेड कलर के बलून्स दिखाई दे रहे है कंप्यूटर दिखाई दे रहा है कुर्सी भी दिखाई दे रही है अलमिरा दिखाई दे रही है लड़की की फोटो दिखाई दे रही है भगवान की फ़ोटो दिखाई दे रही है।